बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखाई दे रहीं है यहां पर शादी का फंक्शन है यहां पर अनेक प्रकार की बत्तियां जगमगा रही है।

इस तस्वीर में बहोत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है खींचने वाले ने क्या तस्वीर खींची है आलीशान तस्वीर है।

इस तस्वीर में मुझे एक फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे सामान पड़ा --

इसमें कुछ वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं लोहे के पहिए है दो व्यक्ति बैठे हुए है।

इस तस्वीर में मुझे एक लड़का जिम करता हुआ नजर आ रहा है बहुत ही अच्छी --

यहां पर बहुत ही अच्छी प्रकार से एक खींची गई तस्वीर है थोड़ा सौंदर्य भी नजर आ रहा है।

यहां पर फुटकर व्यापार की दुकान है इसमें अनेक सामान पड़ा हुआ है अनेक प्रकार का--

खरीदकार बदले मे पैसे दे रही है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।

यहां पर बड़ी मात्रा में कुछ महिलाएं है तो कुछ पुरुष है एक शादी का घर है या फिर कोई यहां पर अन्य फंक्शन है।

फुटकर व्यापार की दुकान है बाहर एक महिला एवं एक पुरुष की प्रतिमा भी लगी हुई है आपस में एक दूसरे से मिल जुड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति दुकान में बैठा काम कर रहा है।